इस दृश्य के अंदर स्पोर्ट्स स्टेशन का एक हरे रंग का डिब्बा रखा हुआ नजर आ रहा है।

नीचे स्टोर पर व्यक्ति खड़े हुए नज़र आ रहे हैं।

जिस पर लिखा है राज पब्लिक स्कूल ।

यहाँ पर शादी के खाने का प्रबंध किया गया है।

स्टेज के ऊपर लाल रंग का सोफा लगाया गया है।

इस दृश्य के अंदर बत भुत बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है।

इस दृश्य के अंदर शादी के लिए एक मंडप सजाया गया है |

यह एक खंडहर की तरह लग रहा है।

एक तरफ पहाड़ी के ऊपर बहोत सारे पेड़ लगे हुए दिख रहे हैं।

इस दृश्य में मे आई हेल्प यू का डेक लगा हुआ है| जिस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है।

जहाँ पर क्रीम कलर की टाइलें लगाई गई हैं।

इस दृश्य के अंदर एक बहोत लंबा हॉल दिखाई दे रहा है इस हॉल के अंदर सफेद रंग की टाइलें लगाई गईं हैं।

दोनों तरफ काले कलर की खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। सामने नीले रंग का एग्जिट पोल लग --

इस दृश्य के अंदर विशाखा डेयरी पार्लर एक नीले रंग के बोर्ड पर लिखा हुआ है।

जिसने अपनी एक टार टांग के पंजे को पीछे मोड़ कर दूसरे हाथ से अंगूठे को पकड़ा हुआ है यह काले पर्दे के सामने खड़ी हुई है।